जिस पर वाइट कलर से कैपिटल लेटर में आर्यन लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में एक पेट्रोल टंकी दिखाई दे रही है।

एक गोला बना हुआ है जिस पर रेड कलर से एच_पी लिखा हुआ दिख रहा है।

झूला रेड येलो ग्रीन ब्लू कलर का दिख रहा है।

और पीछे की ओर बहोत सा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है।

दोनों साइड एक घड़ी और रेड कलर का बोर्ड दिख रहा है।

जिसमें कुछ गाड़ियां और टेंपू चलते हुए दिख रहे हैं।

नीचे की ओर बहुत से अलग अलग प्रकार के कपड़े और अलग अलग रंग के पन्नियों में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुपट्टा व्हाइट और ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक बघ्घी पर बहोत सी मूर्तियां बनी हुई दिखाई दे रही है।

और साइड साइड में कुर्सियां रखीं हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में एक पेट्रोल टंकी दिखाई दे रही है।

पास ही में एक गार्डन बना हुआ है जिसमें छोटी छोटी घास लगी हुई दिख रही है।

इसमें बहुत सी डाइनिंग टेबल और कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

कुछ लोगों ने लोअर टी शर्ट पहनी है कुछ लोगों ने धोती कुर्ता पहना है।

और बहोत से लोग सर पर पगड़ी बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पूरी मजार में लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

सामने की ओर एक व्हाइट बोर्ड बना हुआ दिख रहा है जिस पर ब्लैक मार्कर से कुछ लिखा हुआ है।

सभी टी शर्ट्स हैं रेड कलर की ब्लू कलर की वाइट और ऑरेंज कलर की टी शर्ट दिखाई दे रही हैं।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

सामने की ओर एक आई_सी_आई_सी_आई बैंक बना हुआ है।